ब गठिया हो या फिर हार्ट का प्रोब्लम हो पेट निकलना ये सारी समस्या जो है योगा करने से निकल जाएगा खत्म हो जाता है। यह बहुत ही सरल उपाए -

इंडिगो फ्लाइट यह इंडिगो का फ्लाइट दिल्ली से पटना एयरपोर्ट से बनारस एयरपोर्ट से कोलकता एयरपोर्ट से आपको ये सभी जगह ये आपको --

बहुत ही बड़ा ये बिल्डिंग बनने वाला है। इसके इंजीनियर नक्सा बता रह --